इधर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है एक ब्लैक कलर कार दिक् रही हे इदर बहुत सरा पानी दिक् रहा हे इदर बहुत सरा छोटे छोटे जड़ दिक् रहे हे|

एक पुराना सा रखे हुय हे बाजु में बहोत सारे दिख रहे हे --

बहोत बड़े बड़े छोटे फिशेस दिख रहे हे --

बहुत सारे झाड़ दिख रहे है बहुत सारे पहाड़े पीछे दिख रही है बहुत सारा बादल नज़र आ रहा है बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है।

इधर पुरानी हवेली दिखाई दे रही है बहुत बड़ी दिख रही है | ये बहुत बड़े दिक् रही हे उसमे अंदर जाने केलिए अस पास बहुत सरे दरवाजा नजरआ रहे हे ये पातर ओ की हवेली जैसी दिक् रही हे |

इधर एक बहुत बड़ी होटल नजर आ रही हे| होटल स र ग्रैंड बोल का नाम ऊपर नाम लिखा हुआ ओवर आसमान लिखा हुआ हे |

इधर एक घर दिखाए दे रहे है हर बहुत कूप सूरज हे ऐसे ग्रीनरी से सजाया गया हे इधर बहुत जाड दिख रही हे --

ये रास्ते में कपडोंके दाल कर रहा हे इदार हिन्दुस् के पोस्टर्स रेक हुए हे ेदार पूल बी डेकोरेट किया गया हे अंदर जाने केलिए |